जहां बहुत सारे लोगों की भीड़ है।

शीशे का केबिन दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारी मिठाइयों का स्लैब --

आगे की तरफ बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहां एक नदी--

जहां पर एक बिजली का खंबा भी दिख रहा--

सामने की तरफ मुझे यहां एक लाल कुर्सी दिखाई दे रही है।

जहां पर एक आदमी दिखाई दे रहा है।